सैमसंग गैलक्सी बिरला इलेक्ट्रानिक्स बहोत सारी चीज यहाँ मिलती हैं।

पाहड़ों को फूल को रास्ते कि लाइट लगी हुई है। बोर्ड लगा हुआ है अच्छा दृस्य है और भी अच्छा।

मकान दिखाई दे रहे है और ग्राउंड सा आमने सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बजाने वाले का मकान है।